और उसके बगल में एक घर भी है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारे स्कूटी दिख रहा है और बहुत सारे मनुष्य भी हैं।

और बहुत सारे बिल्डिंग भी है और सामने में स्टेट बैंक ए_टी_एम का पोस्टर लगा हुआ है और--

पीछे में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और लंबे से वायर भी हैं और एक रोड भी है।

और बहुत सारे लाइट्स भी है और एक बड़ा सा कार्ड बॉक्स भी है। उसपे बहुत सारे बुड्ढे की मूर्तियां भी है।

राइट में एक दुकान भी है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारे जिम के सामने दिखाई दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे तो बड़े बड़े सोफे दिख रहा है और--

और पीछे में बहुत ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग हैं और उसके बगल में बहुत सारा पोस्टर भी हैं।

उसके पीछे एक चर्च दिख रहा है औरउसके ऊपर की छत है टीना।

और ऊपर आसमान भी दिख रहा है और बहुत सारे सफेद रंग के बादल भी हैं।

और एक पीला रंग का पोस्टर भी दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे एक रूम दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे सामाने दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे लोग दिख रहा है।

और सामने में एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।

और बहुत सारे बस्ते भी दिख रहा है और बहुत सारे दुकाने भी है।

और सामने में एक बड़ा सा पेड़ भी है और पीछे में भी बड़ा सा पेड़ है।

उसके सामने नीचे में लोहे का बॉक्स दिख रहा है।

के ऊपर अमूल लिखा हुआ है और सामने में कुछ पेड़ के पत्ते भी दिख रहा है।

और वहाँ में एक स्कूटी भी है और बहोत सारे मनुष्य भी है।

जिसके कपड़े के रंग लाल पीला और नारंगी है।

मुझे बहुत लंबा सा एक घर दिख रहा है।

और साइड में बहोत ही बड़े बड़े पेड़ है और बहोत सारी खिड़कियां भी दिख रहा--

तस्वीर में मुझे बहुत ही बड़ा सा एक रूम दिख रहा है।

ऐसे में मुझे एक दुकान दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे खाने की चीजें और बहुत सारे सामाने भी दिख रहा है।

के वहा बगल में चिड़िया भी दिख रहा है।

यहां कुछ ऊपा में सूखा पत्ता भी दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे बड़ा सा नदी दिख रहा है।

और उसके बागों में थोड़ा सा कुआ भी है।

बहुत सारे मनुष्य दिख रहा है और बहुत ही बड़े बड़े लाइट भी हैं।

और इसके अंदर बहोत सारे सुंदर सुंदर गमला भी है।

और पीछे में एक काला रंग का टेबल भी है।

पीछे बहोत सारे भगवान के पतले भी हैं।

कुछ लड़के गेंजी पहना है तो कुछ पूरे फूल स्लीव्स वाले कपड़े पहना है।

उसके साइड में एक लंबा सा रोड दिख रहा है और बहुत सारे वायर भी हैं।

मुझे बहुत सारे काला अंगूर दिख रहा है।

में मुझे एक रूम दिख रहा है।

के पीछे मे बहोत सारे बड़े बड़े पर्दा भी है और--

इसके बगल में बहुत सारे लाल रंग के फूल भी दिख रहा है।

और बाहर में एक लंबा सा सीढ़ी दिख रहा है।